फोटो भी दिखाई दे रहे हैं और लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

से भरे हुए हैं लोग भी दिखाई दे रहे हैं हरे रंग का मैट भी दिखाई दे रहा है।

जिसने सफेद रंग की टी शर्ट पेहनी हुईं हैं नीले रंग की पैंट पेहनी हैं एक औरत भी--